रेस्टोरेंट के अंदर काफी सारी लैंप वाली लाइटें भी लगी हुई हैं।

मॉल की छत पे काफी सारी लाइटे भी जली हुई है।

दुकान के बाहर काफी सारे पैकेट और तंबाकू भी टांगा हुआ --

दुकान की छत पे ट्यूब लाइट और छोटी लाइट भी लगी हुई --

कांच की खिड़कियों के ऊपर और नीचे लाल कलर का पेंट दिख रहा है।

चारों तरफ लोग भी चलते हुए इसमें दिख रहे--

एक कमरे के अंदर छत पे डेकोरेशन दिख रहा --

छत पे काफी सारी सफेद कलर की लाइटे भी जली हुई --

एक बड़ी गुलाबी कलर की बिल्डिंग इसमें दिख रही।

बिल्डिंग के बाहर छोटे छोटे पेड़ भी लगे हुए--

इसकी छत पे काफी सारी बड़ी और छोटी लाइटें भी जली हुई --

जिसमें सफेद कलर की और ऑरेंज कलर की मालाएं लटकी हुई --

जिसमें काफी सारी बकरियां खास खाती हुई दिख रही।

एक बड़ी दुकान के अंदर काफी सारा सामान रखा हुआ दिख रहा।

एक बड़ा गार्डन इसमें दिख रहा--

जिसमें हरी कलर का थाली के नाम का बोर्ड लगा हुआ --

सामने दीवार पे नीले कलर की पट्टी का पेंट भी दिख रहा है।

दुकानों की बहर रिलैक्सो नाम का बोर्ड भी लगा हुआ है।